सामने मछली दिखाई दे रही है मछली जो है वो झींगा नज़र आ रही है।

वो प्लास्टिक में रखी नज़र आ रही है।

एक ऑटो जाती नज़र आर ही है। ऊपर आसमान नीला और साफ़ नज़र आ रहा है।